यहां पर कई सारे दो पहिया दिखाई दे रहे है खड़े हुए।

मकान के सामने दो लोहे की जाली लगी हुई है।

यह एक बड़ा सा सिनेमा घर है।

में कुछ लिखा हुआ है।

यह एक कपड़ा बाजार का केंद्र है।

इस ध्वनि यंत्र के बगल में एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

कुछ दो पहिया वाहन और कुछ स्वचालित वाहन देखाई दे रहे।

एक बच्चा चला रहा है।

और मेज रखा हुआ है।

बीच में एक मूर्ति है।

बगल में पवन चक्की है।

खेलने के लिए कुछ उपकरण लगे हुए हैं।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

चित्र दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग खड़े हुए हैं।

कुछ दो पहिया वाहन खड़े हैं।

और एक खंभा खड़ा हुआ है।

दो आदमी और एक औरत है।

यह एक शिक्षा का केंद्र है।

एक लकड़ी पर रखा हुआ--

इस चार दीवारी पर कुछ--

फूल के मलायें लटक रहे हैं।

कुछ लोगों की तस्वीर है।

मंदिर अच्छे से सजा है।

बीच में दो पहिया वाहन खड़ा हुआ है।